सामने एक एक्सिस बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

और कुर्सियों का कलर व्हाइट कलर का दिखाइए दे रहा है यहा पर।

पर कुछ ये कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर एक--

और इसका ये चोटी रेड कलर की भी दिखाई दे रही है यहां पर इसकी येलो कलर की भी दिखाई दे रही है।

और बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही--